घास लगी हुई है एंड मंदिर लगी बनी हुई है एंड आपको बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे कुछ लोग शॉप पर दिख रहे होंगे कुछ लोग झंडा भी लगाए एंड छाता भी लगा है।

हेलो एवरीवन जैसा की आप देख रहे हैं यह आपको व्यू दिख रहा होगा बहुत ही सुन्दर लग रहा --

ये कार आपको दिख रहा होगा एंड आपको बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे होंगे एंड बिल्डिंगस में जैसे बहोत सारी खिड़--

हेलो एवरीवन जैसा की आप देख रहे है यह पे खंडर सा घर दिख रहा होगा इस घर में मिश्रा जी रहते हैं एंड उसके बगल में बिजली का ट्रांसफॉर्म है एंड आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहें होंगे।